और मिट है बहुत ज्यादा समान है।

दोकान है मम कपड़ा वाला दोकान है बहुत चारा है।

आदमी है बहुत आदमी है चप्पल का दुकान है कपड़ा का दुकान है वी --

गाछी है पत्ता है घर है मचान है।

फूल है बागान लगाया है बहुत आदमी गाछी किया है कुछ-कुछ कर रहा है।

गाराज है टेबुल है पक्की है।

पोल है पेट्रोल लिखा हुआ है बहुत सारा मर्सल्ली है।

मोमबत्ती है बहुत सारा आदमी हैं तीन चार कुत्ता है।

छत है दीवार है पेंट हुआ है पूरा दीवार।

उह कुर्सी हई लोहा वला कुर्सी हई बहुत ऊ --

एक स्कूल है फील्ड है खेलने के लिए फील्ड है बहुत सारा स्कूल है दो मंजिली स्कूल है।

पढ़ाता है बोर्ड है कलम --

बहुत सारा आदमी है फूल है भगवान है मंदिर है तीन भगवान है तीन मूर्ति है।